और जीम में बहुत सारे लोग सुबह जाते हैं जीम करने के लिए जीम करने से हमारा शरीर में बॉडी बनता है और शरीर फिट भी रहत --

इसलिए यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने के लिए | इस कोचिंग सेंटर का नाम ट्रिक कोचिंग सेंटर है | यहाँ पर बहुत अच्छा --

टहलने के लिए सुबह-सुबह और टहलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें कोई भी प्रकार के बीमारी नहीं होते हैं हमें हर रोज --